और यहाँ पर छब्बीस जनवरी पर और पद्रह अगस्त पर रैली भी निकलती है।

यह वह फोटो ये फोटो खींच रहा है। टोपा लगया हुआ ये एक हस रहा है।

ये एक स्टेप है। मुक्का मारो मुक्का मुँह पे दाँत में मार दूँगी मैं। ये सभी ऐसे बहोत बढ़िया डांस कर रहे हैं लोग --

और यहां पर कैश काउन्टर भी अच्छा है। बिल्कुल वेराईटी बिल्कुल बेहतरीन है खाने की।

यू एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में --

पता नहीं सफाई का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता।

ये नोएडा का सीन है।

और ये तो तुम्हारा ये तुम्हारा लेंटर डाला जा रहा है। लेंटर में बिल्कुल देखिये वो कैसे-कैसे कर रहा है और --

ये यहाँ पर बच्चे खाएंगे और फिर देखते हैं स्वादिष्ट लगती है आप भी खाओ आ जाओ।

मिट्टी के घर बने हुए हैं। अब ये आज से दस साल पहले बारह साल पहले का सीन है।

ये टॉयलेट वॉइलेट सब अब खेत में जाते हैं।

इसमें अभी स्पेयर्स पार्टस लेने के लिए गया हुआ है।

एक जैसी एक एक सात बैठा दे --

यहाँ पर लोग कपल वपल आवे हैं फोटो वोटो खिंचवावे।

यो एक क्रिकेट पिच यहाँ पर भइया सचिन तेंदुलकर भी खेच खेलकर आजकल आजकल बहौत बड़े क्रिकेटर हो रहे हैं ये अपने पुराने दिन भूल गए हैं।

ये एक यहाँ पर बच्चे ढूँढ़ने के लिए गया है ट्रेनर --

ट्रेनर भी उपलब्ध है यहाँ पर और ट्रेनर भी मोटा हो रहा है मोटा पेट खा-खा कर ट्रेनर आज ट्रेनर कल मिलते ही कहीं नहीं।

ये एक कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी में यहाँ नेस्ले की कॉफ़ी भी मिलती है। यहाँ पर हैंड सेनिटिज़ेर भी रखा है लाइफ बोय का।

मास्क का भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। कोविड नाइनटीन वैसे चल रहा है पर कॉफ़ी बिल्कुल मन लगता है पीने में आप भी पीओगे तो एक बार पीओगे तो बार-बार मांगोगे फिर।

पी के देखना कितनी अच्छा लगती है यहाँ की कॉफ़ी एइटीन सेंचुरी में यहाँ पर की कॉफ़ी --

सिमेन्ट का ये काम चल रहा है। यहाँ पर वर्कर देखना ना इंजीनियर है ना वर्कर हैं पता नहीं काम ये --